यहाँ पर एक सड़क हैं जिसके बाजू में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं वही एक बड़ा-सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक रोड है जिसके बाजू में बहुत सारी इमारते बनी हुईं हैं इमारतों का रंग गुलाबी सफ़ेद और हरा है| वहीं एक ईमारत के ऊपर एक बो-पर र्बोर्ड भी पर्दा भी लगा हुआ है।

माकन के अंदर एक बडी सी खिड़की भी लगी हुई है जो लोहे की है और दीवारो के ऊपर एक--

वहीं छत की दीवाल पर बहुत सारी गोल-गोल डिज़ाइन बनी है और एक झूमर भी लगी हुई है।

तीन मूर्ति बैठे हुए रूप में स्थापित है और तीन मूर्ति खड़े हुए रूप में स्थापित है इन मूर्तियों का रंग जैसे तीन मूर्ति का रंग पीला और हल्का-सा काला है।

जिनका रंग सफेद लाल पीला है और वही पर एक गोल सा कुछ बना हुआ है जिसपर कुछ लिखा हुआ है और वो पीले रंग का है वही ऊपर एक दीवाल भी दिख रही --